यह पहाड़ी इलाका है इन्होंने एक ने ब्लैक कलर की लौर रेड कलर की शर्ट टी-शर्ट पहन रखी है और एक ने ब्लू कलर टी-शर्ट पहन रखी है।